इंट्रोडक्शन टो अरेज के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि अरेज कैसे बनाये जाते हैं और अरेज के अवयवों का कैसे उपयोग किया जाता है
इस ट्यूटोरियल में हम प्रयोग करेंगे उबुंटू 1110 जेडीके 16 एंड इक्लिप्स 370 इस ट्यूटोरियल के लिए आपको दाता टाइप्स और जावा में फोर लूप का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं है तो उचित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी दर्शायी वेबसाईट पर जाएँ
अरेज डेटा का एक संग्रह होता है
उदाहरण के लिए अंकों की सूची नामों की सूची तापमानों की सूची वर्षा की सूची प्रत्येक वस्तु का इसकी स्थिति पर आधारित एक सूचकांक होता है
पहले अवयव का सूचकांक 0 है
दूसरे अवयव का सूचकांक 1 है और इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं
अब देखें कि इस डेटा को कैसे स्टोर किया जाता है
अतः इक्लिप्स पर जाएँ
अरेसडेमो नामक एक क्लासपहले ही बनायी जा चुकी है
मेन मेथड में वर्षा के डेटा को जोड़ें
अतः मेन फंक्शन के अन्दर टाइप करें इंट रेनफॉल ओपन और क्लोज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें 25 31 29 13 27 3512 और अंत में सेमीकोलन
ध्यान दें कि रेनफॉल नामक वेरिएबल के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं
यह रेनफॉल को इंटीजर्स के एक अराय के रूप में घोषित करता है
अराय के अवयवों को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट्स का प्रयोग किया जाता है
अब डेटा का प्रयोग करें
अतः अगली पंक्तिमें टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रेनफॉल स्क्वायर ब्रैकेट्स में टाइप करें 2 हम सूचकांक संख्या 2 के साथ अवयव प्रिंट कर रहे हैं
दूसरे शब्दों में अराय में तीसरा अवयव यानी 29
अब प्रोग्राम को सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट में तीसरा अवयव यानी 29आता है
अब 2 के स्थान पर 0 टाइप करते हैं प्रोग्राम को सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं आउटपुट में प्रथम मान यानी 25 आता है
अब पहली वस्तु के मान को संशोधित करते हैं
अतः टाइप करें रेनफॉल 0 11 अब इसके मान को देखते हैं
अतः प्रोग्राम को सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं मान बदलकर 11 हो गया है
अब क्या होगा यदि हमें केवल अराय का आकार ज्ञात है और मान नहीं
अब देखें कि इस प्रकार के अराय कैसे बनाये जाते हैं
मेन फंक्शन से सब कुछ हटायें और टाइप करें इंट स्क्वेयर्स न्यू इंट 10 यह स्टेटमेंट 10 अवयवों युक्त इन्टीजर्स का एक अराय निर्मित करता है
अराय का नाम हैsquares
इसमें कुछ और मानों को शामिल करते हैं
अतः टाइप करें squares0 1 अगली लाइन में squares1 4 अगली लाइन में squares2 9 squares3 16 अतः हमने पहली चार संख्याओं के वर्ग एंटर किए हैं
अब अराय के अन्य अवयवों का क्या होता है
अब देखें कि उनमें क्या शामिल है
अतः हम अराय में छठवां मान प्रिंट करेंगे
टाइप करें सिस्टम एस capitaloutprintlnस्क्वेयर्स 5 प्रोग्राम सेव और रन करें
हम देखते हैं कि मान शून्य है
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इंटीजर्स का एक अराय बनाते हैं तो सभी मान शून्य से शुरू होते हैं
इसी प्रकार फ्लोट्स के एक अराय में सभी मान 00 से शुरू होंगे
यह एक लम्बी प्रक्रिया होगी यदि हमें अराय में प्रत्येक मान को टाइप करना हो
इसके बजाय एक फोर लूप का प्रयोग करते हैं

अब आउटपुट को देखते हैं
जैसा कि हम देख सकते हैं हम अराय में छठवें अवयव का मान प्रिंट कर रहे हैं अतः सेव और रन करें
हम देखते हैं कि छठवां अवयव अब 6 का वर्ग 36 है
वास्तव में हम अब फोर लूप के अन्दर सभी मानों को सेट कर सकते हैं
उन लाइन्स को हटायें जो मानों को मैनुअल रूप से सेट करती हैं और 4 को बदलकर 0 करें
इस तरह सूचकांक 0 से 9 से सभी अवयवों को संबंधित वर्गों से सेट किया जाता है
हम अब तीसरे अवयव का मान देखेंगे
अतः 5 को बदलकर 2 करें
सेव और रन करें
जैसा कि हम देख सकते हैं कि तीसरे अवयव का मान लूप में सेट किया जा चुका है और यह 9 है
इस तरह अरेज को बनाया एवं प्रयोग किया जा सकता है
हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर पहुँच गए हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा अराय बनाना एवं घोषित करना और एक अराय में अवयवों का प्रयोग करना इस ट्यूटोरियल के लिए नियत कार्य है इंटीजर्स के एक दिए गए अराय में अराय के सभी अवयवों का योग ज्ञात करना स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर पर उपलब्ध वीडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी spoken tutorialorgnmeict इंट्रो पर उपलब्ध है यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है
मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद